जैसे बहोत कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर आसमान ग्रीन नीला सफ़ेद काला रंग का दिखाई दे रहा --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

और दो चम्मच रखी हुई दिखाई दे रही हैं दो चटाई रखी हुई दिखाई दे रही हैं और एक काले कलर की प्लेट भी रखी दिखाई दे रही है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है। उसके सामने एक टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है। टेबल में बहोत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है जैसे की --

सामने की तरफ बहोत सारा वाइट सफ़ेद कलर से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान नीला और सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

और वह जिम में बहोत सारी दिखाई दे रही हैं और पीले रंग की दिखाई दे रही हैं। आदमी के बगल में बहोत बड़ा कार दिखाई दे रहा है।